यह इमेज एक रेलवे ट्रैक की दिखाई दे रही हैं। यहां पर पटरियां दिखाई दे रही हैं।

घास उगी हुई है पीछे कुछ पेड़ नजर आ रहे हैं। स्ट्रीट लाइट दिखाई दे रही है।

और रेड कलर की बाउंड्रीज हैं।

नीचे एक वॉकिंग फुटपाथ एरिया है आस-पास कुछ पेड़ -पौधे दिखाई दे रहे हैं।

जिसके ऊपर वेलकम टू टूरिज्म कैपिटल ऑफ़ महाराष्ट्र औरंगाबाद लिखा हुआ है।

इस इमेज में एक पीकॉक दिखाई दे रहा है।

पास ही में एक लकड़ी का टुकड़ा दिखाई दे रहा है।

व्यक्ति ने चेक शर्ट पहना हुआ है। ग्रे हेयर हैं।

यह इमेज किसी पार्क की नजर आ रही है। यहां पर कई तरह के झूले दिखाई दे रहे हैं। येलो रेड कलर की स्लाइड्स नजर आ रहे हैं।

कुछ घांस उगी हुई है। आस-पास पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

यह इमेज किसी फंक्शन की दिखाई दे रही है। ये पार्किंग एरिया है। यहां पर कई सारी बाइक्स स्कूटी या कार खड़ी हुई दिखाई दे रही है।

यह इमेज एक नदी की है। जिसके ऊपर एक ब्रिज बना हुआ है। लोहे की बाउंड्री वाल्स दिखाई दे रही हैं।

अ यहाँ पर ग्रीन कलर का कारपेट बिछा हुआ है। कुछ लड़कियों ने पिंक ब्लू रेड ब्लैक कलर की ड्रेस --

लोग दिखाई दे रहे हैं। रेड कलर की चेयरस नजर आ रही हैं। एक पोडियम दिखाई दे रहा है।

यहाँ पर पैबल ब्लॉक्स लगे हुए हैं। सामने की ओर कुछ पानी भरा हुआ है।

यह एक पहाड़ दिखाई दे रहा है। उसके आस-पास कुछ घास नजर आ रही है। कुछ पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

और यहाँ पर कई सारे फ्लावर्स लगे हुए हैं। लाइक येलो रेड ब्लू पिंक कलर के फ्लाव --

यह इमेज एक नदी की दिखाई दे रही है यहाँ नदी का पानी ठहरा हुआ है। सूरज डूबता हुआ दिखाई दे रहा है लाल --

यह इमेज एक कार वॉश सेंटर की दिखाई दे रही है। यहां पर ब्लू कलर की --

इस इमेज में तीन एंट्रेंस गेट दिखाए गए हैं बड़े किले टाइपस इनके उपर शिखर बना हुआ --

एक फाउंटेन है जिसके आस-पास कई फ्लावर्स लगे हुए हैं। लाइक पर्पल रेड व्हाइट --

इस इमेज में एक नदी का किनारा बताया है। आस-पास एक ब्रिज बना हुआ है जिसकी बाउंड्री वाल्स रेड कलर की --